यह शोरूम है| यह शोरूम काफी बड़ा है| इस शोरूम में बहोत सारी गाड़ी खड़ी है।

यहाँ पर बहुत से आदमी आकर सब्जी खरीद कर घर ले जाते हैं। ये सब्जी काफी ताजी --

यहाँ पर मिट्टी के एक घड़ा भी रखा गया है| यह एक मिट्टी के बर्तन है।

यहाँ पर एक रै काउंटर भी बनाया गया है। यहाँ पर काउंटर पर बोहोत सारे लैपटॉप रखे गये है। यहाँ काफी सारे आदमी भी हैं।

यहाँ पर काफी सुन्दर सजाया ग्या है यहाँ काफी भीड़ भी है।